एक सफेद कलर की बिल्डिंग है जिसपर बायो पैथोलॉजी --

इसका नाम राज जैन --

यहां पे फिटनेस की ऑफिस है।

जिसमें बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

एक लाइट का टावर भी दिख रहा--

छोटा छोटा झरने बह रहे हैं।

यहां पर एक झरना दिखाई--